यह जो बहुत खूबसूरत लग रही है। दूर में पहाड़ भी दिख रहे है। जो के बहुत छोटे लग रहे है।

प्लेटफार्म में ऊपर में बहुत अच्छा अल्बेस्टर लगा हुआ है जिससे पानी बारिश का पानी और धूप किसी को न चुभे--

बड़े बड़े है और यहाँ बहुत अच्छी धुप पद रही है जो देखने मैं बहुत अच्छी लग रही है|

प्लेटफॉर्म की सीढ़ियां ब्राउन कलर की है और उसके ऊपर अल्बेस्टर लगा हुआ है ताकि बारिश--

एक प्रलंब दिख रहा है जो कि यहां किसी के छठ के ऊपर चढ़कर पाइप ठीक कर रहा है और इसने की केलो कलर की टोपी पहनी हुई है जो की सेफ्टी के लिए--

यह गुफा की अंदर की फोटो यहाँ पे इन्सानों ने सीढ़िया बनाई है। जाने के लिए और यहाँ पे एक एरो भी दिया है। बगल में क्यों की यह एक विज़िटर प्लेस है। यहाँ का अँधेरा है। और सामने की तरफ उजाला है। जोकी बहुत --